अस अ गार्डन भी बोल दो और यहां पर छोटे-छोटे सारे गमले ही रखे हुए हैं। कैटरपिलर रखा हुआ --

बाहर साइड में पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पर किसी चीज की शॉप है कटोरा रखा है उसमें कुछ रखा हुआ है।

एक गेराज है जिसमें दो लोग खड़े हैं कार ऊपर है दो और एक कार नीचे खड़ी है दोनों कार का बोनेट खुला हुआ है नीचे दो टायर रखे हुए हैं चेंज किया जा रहा है टायर ।

और तीन चार लोग खड़े हैं।